जिसकी छत करकट की है।

इस दृश्य में मस्जिद की तस्वीर दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की है।

उसे पे जी_एस_आई लिखा हुआ है।

नीचे लाइट फिरोजी कलर की मैट बिछी हुई है।

एक आदमी शर्ट और लुंगी पहना है।

यहां पे कुछ सोफे रखे हुए हैं।

दृश्य में बिल्डिंग की बाहर की तस्वीर दिखाई दे रही है।

जहां पे लोहे की जंजीरे से बाउंड्री की हुई है।

छोटा सा ग्राउंड भी नजर आ रहा है।

जो वाइट कलर की जम्फर और ब्लैक कलर की पैंट पहनी है।

छोटी सी सीढ़ियां दिखाई दे रही है।

इस पर कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

दो बच्चा हाथ में मोमबत्ती लिए खड़ी है।

सीलिंग पे लाइट दिखाई दे रही है।

बहोत सारे छोटे छोटे पत्थर नजर आ रहे हैं ।

इसपे बैनर लगा करके एयरटेल लिखा हुआ है।

दृश्य में ऑफिस रूम की तस्वीर दिखाई दे रही है।

जहां पे लंबी सी टेबल लगी है।

और ढेर सारे चेयर लगे हुए हैं।

दृश्य में आइसक्रीम की शॉप की तस्वीर दिखाई दे रही है।

जो लाइटे से सजी हुई है।

बांस बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

यहां पे तीन बेड लगे हुए हैं।